यह एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि जहाँ पर गाड़ियां मिलती है उसका एक उसका नाम है सरोज इंटरप्र्याजिस मथुरिया ई रिक्शा एवं स्कूटी --

यह एक स्टेज बना हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत है | बैकग्राउंड इसका पूरा ग्लो गोल्डन कलर का है और गोल्डन कलर कि ही डिस्प्ले है इसपे।